ट्रक नहीं है लॉरी दिख रही है। लोरी जोकि बड़े वाहनों जैसे कन्टैनर को कहा जाता है। इनको कारों की ट्रांसपोर्ट करने के लिए इनका उपयोग किया जाता रहता है। जैसे जो बड़े-बड़े मैनुफ़ैक्चर्ड कार होते हैं ट्रैक्टर होते हैं --

देखा जा सकता है की बहुत फूल पति पोधे पेड़ यहाँ पर उपलब्ध हैं।

जनपद गोरखपुर से अब एयरपोर्ट बड़ा ही व्यस्त हो गया है यहां से लगातार डेली नियमित मुंबई दिल्ली बेंगलुरु कोलकाटा बड़े-बड़े शहरों के लिए फ्लाइट लगातार निर्भात रूप से --

मजदूर काम करते हुए दिख रहे हैं जो कलाक्रति है एक समाजिक समरसता का लग रहा है की संदेश दे रही है क्या --

और उधर देखा जा सकता है खेत हैं खेत दिख रहे हैं जंगल गी हो सकता है मतलब।

या कोई प्रेजेंटेशन वगैरा का कार्यक्रम होता है तो ऑडिटोरियम में होता है। हालांकि यहां पर अगर ये सर्किट हाउस का ऑडिटोरियम होगा।

बहुत बढ़िया भी नहीं कहा जा सकता पी_वी_आर आयनोक्स से बहुत ही बेहतरीन है लेकिन यहां पर टिकट की कीमतें सस्ती हैं इसलिए अपने रेंज में बढ़िया है य --

लेकिन यह तो मोटरसाइकिल का ही ढांचा दिख रहा है। शाकर इंजन दिख रहा है। सीट वगेरा नहीं है। क्या पता है अभी उसकी एसेबलिंग की जा रही है। वो इसलिए ऐसी --

तो उनकी तस्वीर लगी है। द्-दुकान का नाम है बाल दाड़ी ।

सी.एम.ओ. का ऑफिस है सी.एम.ओ. का मतलब होता चीफ मेडीकल ऑफिसर ।

देखा जा सकता है लग रहा है किसी कार्यालय की तस्वीर है या सर्किट हाउस की क्योंकि यहां पर बड़े-बड़े वी_आई_पी वाहन खड़े हैं इनोवा क्रिस्टा चौकी अधिकारियों की गाड़ियां हैं।

इस में नदी की लोंगो की तस्वीरे दिख रही है।

यहाँ पर एक सिस्टर दिख रही हैं और यहाँ पर ईसाईयों के प्रमुख चिन्ह --

जो पवित्र चिन्ह जिसे माना जाता है क्रॉस ।

यहाँ पर देख सकते हैं कि आप कि बहोत ही लम्बी कॉरिडोर दिख रही है कतार दिख रही है मतलब बढियां है जो भी है बड़ा मनोहरम दृश्य लग रहा है। बढियां है यह भी --

यह पता नहीं किस शहर का तस्वीर है? कहाँ की तस्वीर है? लेकिन जहाँ की भी तस्वीर है मंत्रमुग्ध करने वाली मनमोहक तस्वीर दिखाई दे रही है। बहोत ही बढियाँ धन्यवाद।